यह एक स्विमिंग पूल है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्विमिंग करने के लिए आए हुए हैं यह बहुत अच्छा लगता है ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं ।

यह एक होटल है यह होटल साइ नाथ होटल है यहाँ बहुत बिल्डिंग बहुत ही रूम बनाइ गऐं हैं।

यह कोई सरकारी कार्यालय है यहाँ बहुत सारे लोग आते-जाते रहते हैं।